इस इमेज में कोई फसल दिखाई दे रही है यहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है ये कुछ बन्दे है और कुछ स्त्रियां है।

यहां पर गुब्बारों से सजावट की गयी है यहां पर छत पर पंखे लगे हुए है यहां पर लाल रंग की कुर्सियों के ऊपर लोग बैठे हुए है।

यहाँ पर एक बाइक का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है और यहाँ पर हिन्दी और अंग्रेजी के शब्दों में लिखा हुआ है।

इस इमेंज में दो बैंक्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एक बैंक का ए.टी.एम. भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सड़क भी दिखाई दे रही है सड़क पर काफी ट्रेफिक नजर आ रहा है और यहाँ पर एक बंदा दिखाई दे रहा है।